ये बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनाया गया है।

यहाँ पर पूरा पानी ही पानी है यहाँ पर और बगल से पानी है जो कि बहोत सुंदर लग रहा है और बीच में रस्ता है जो कि बहोत अच्छा लग रहा है देखने में और खूबसूरत भी है अच्छा खासा दिख रहा है ।

ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत भी सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा है यहाँ का सब गाड़ी घर सब अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है ये और बिहार का है ये नेपाल गाड़ी।

और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है खूबसूरत भी है बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ का जगह।